और यहाँ पे बिच मे एक मूर्ति बना हुआ है और उसके साइड साइड मैं बहुत साडी हरी हरी--

यहाँ पर कुछ झोपड़ी बना जैसा दिख रहा है जो-जो का बना हुआ है कुछ बांसे लगी हुई है उसमें।

ओ कुछ येलो कलर की पेंट की गई है और सामने मे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा दिख रहा है गमले मे भी है।

भी दिख रहे हैं | उसके पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं | कुछ कुछ खम्बे भी लगे हुए हैं ।

और उसमे ऊपर साइड में कांच लगा है उसके अंदर में कुछ-कुछ समाने रखी हुई है और साइड में कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी हरी हरी घास लगी हुई है।